गर्ल लड़की भरतनाट्यम डांस कर रही है रेड साड़ी और गोल्डन ब्लाउज पेहेन के और स्टेज भी दिख रहा है और यहाँ--

यहाँ पर एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है और नारियल के पेड़ लगे हुए है बहुत सारे ऊपर घर भी दिखाई--

यहाँ पर एक प्लेग्राउंड है बड़ा सा और यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स खड़े है बड़े बड़े और सर भी एक लड़का--

यहाँ एक हॉल दिख रहा है हॉस्पिटल का--

रेत भी दिखाई दे रही हैं।